पे स्कूल फंक्शन चल रही है बहुत सारे लड़के लड़की इस स्कूल में फंक्शन फंक्शन अटेंड करने के लिए आए है पेरेंट्स आये है काफी भीड़ लगी गुई है ।

आते हैं बहुत सारे सामान यहाँ पे लेने के लिए आये हुए हैं। रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है।

यह एक मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही बड़ी है। यह मंदिर में बहुत सारे झंडे लगाये गए हैं।